कोटक महिंद्रा बैंक का बोर्ड दिख रहा है ब्लू कलर का एक और बैंक है बीच में दुकान है।

और कंबल फोल्ड करके रखा हुआ है सामने खिड़की दिख रही है।

और जूते चप्पल रखने वाले लकड़ी के स्टैंड बने हुए हैं जिसमें जूते चप्पल रखे हुए हैं।

यहाँ सामने कैफे दिख रहा है जिसमें ऊपर--

काउंटर जैसा बना है उसके ऊपर बहुत सारे स्ट्रो रखे हुए बॉटलें रखी हुई हैं कप रखा हुआ है।

यहाँ सामने मुझे हॉस्पिटल दिख रहा है हॉस्पिटल --

में और मरीज लेटा हुआ है बेड पे--

और एक पेशेंट है लेटा हुआ है।

एक डमी ने ब्लू कलर का अ कुर्ती पेहना हुआ है एक ने कुर्ता पजामा पेहना है बाहर कार्टून के बॉक्स रखे हुए है।

और सब में रोज के फूल बहुत सारे हैं।

यहाँ सामने मुझे पहाड़ दिख रहा है।

एक घर है जोकि अभी-अभी बन रहा है।